इस तस्वीर में हमें बिल्डिंग नजर आ रही है और बिल्डिंग के बाहर हमें बैंक का पोस्ट नजर आ रहा है यह पर्पल कलर का पोस्टर है।

और यहां पर जो पोस्टर लगा हुआ है उसका कलर बलू है साइड में एक शॉप है जिस पर रेड कलर है और यहां पर दिवाले इसमें--

इस तस्वीर में हमें एक स्काई दिखाई दे रहा है ब्लू और वाइट कलर का और यहां पर एक ई रिक्शा दिखाई दे रहा है और ई रिक्शा में तीन लोग बैठे हुए हैं यह रिक्शा का कलर ब्लू है।

और यहां पर हमें कार दिखाई दे रही है कार का कलर लगभग सभी का वाइट है और यहां पर दो रोड दिखाई दे रहे हैं रोड के सामने--

इस तस्वीर में हमें यहाँ पर आसमान दिखाई दे रहा है ब्लैक एंड व्हाइट आसमान दिखाई दे रहा है इसके अलावा यहाँ पर ऊपर पर्पल कलर का आसमान भी दिखाई दे रहा है।

यह इसका कल र ब्लैक है अक्षर के वहां साइड में यहां पर कप्बोडड लगा हुआ है कप्बोडड के ऊपर यहां पर क्रीम रखी हुई है क्रीम येलो कलर की है लाइट लगी हुई है।

तस्वीर में हमें बैंक नजर आ रही है बैंक पोस्टर लगा हुआ है यहाँ पर जो ग्रीन कलर का है।